आसमान का कलर लाल है सूरज का कलर लाल है बिल्डिंग का कलर पर्पल है।

और गुब्बारे लगे उनका कलर सफेद और लाल है कैंपर का कलर हरा है।

वहां पे बैनर का कलर पर्पल ऑरेंज पीला और काला --

पौधे का कलर हरा है इमारत का कलर गुलाबी है माइक का कलर नीला है।

कर लेते है बैनर का कलर सफेद है बुक्स का कलर रंगीन है।

फर्श का कलर पर्पल है छत का कलर क्रीम है रोशनी का कलर पिला है।